स सभा भवन है जो की बोहोत ही खूबसूरत है और इधर बोहोत सारी कुर्सी और टेबल लगे हुए हैं| ऊपर बोहोत सारे रंग-बिरंगे फूल से सजाए हुए हैं और उधर दीवार पे एक पेंटिंग भी लगी हुई है।

यहाँ पे एक बोहोत ही बड़ी पेड़ भी है और मंदिर बोहोत ही खूबसूरत और बोहोत ही अच्छे लग रहे| ये बोहोत ही बड़ी हैं लेकिन यहाँ पे दर्शक नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पे बोहोत अच्छी लग रही दिखने में।

जगह है खेलने की जगह है जो कि यहां पे टेनिस और बॉल खेला जा रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लग रहे है और ये बहुत ही बड़ा हॉल है ऊपर बहुत सारी लाइटे जल रही है और ये ग्रीन कलर के कलर से की हुई है नीचे हां फर्श भी बिछी हुई है।